पूरा सेट बना हुआ है।

लोग आते जाते दिखाई दे रहेएक दो लोग दिखाई दे रहे हैं लाइटिंग दिखाई दे रही है ऐसा लग रहा है की पीछे का दृश्य है।

एक भवन का निम्-- दिखाई दे रहा है मैन गेट दिखाई दे रहा हैलोहे का गेट यहाँ पे लगा हुआ है लाइटिंग की गई है।

बहुत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है पीछे कारख़ाने के समान बड़ा सा गेट लगा हुआ है जो की वाइट कलर का है।

लम्बा सा पूल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर वाहन जाते जाते दिखाई दे रहे हैं नीचे काफी वाहन आते जाते दिखाई दे रहे है तो इसमें सड़क दिखाई दे रही है काफी सारे घर बने हुए हैं बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है।

ईसा मसीह दिखाई दे रहा है प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है नीला गेट दिखाई दे रहा है लाल पट्टी पे बना हुआ है काफी सारे पेड़ पौधे आगे पीछे दिखाई दे रहे एक तरफ बोहत बड़ा भवन दिखाई दे रहा है और--

फादर खड़े दिखाई दे रही है जो अपनी स्पीच दे रहे है अ लाइटिंग दिखाई दी रही है साउंड रिकॉर्डिंग के लिए बाक्स दिखाई दे रहे हैं।

अ रेता दिखाई दे रही है रेता छानने वाली छननी दिखाई दे रही है खिड़कियाँ दिखाई दे रही है अ दो मज-- एक व्यक्ति सामने खड़ा होकर मकान बनता देख रहे है तो बाकि यहाँ पे मज़दूर काम करते नजर आ रहे है।

एक युवक जाते हुए दिखाई दे रहा है एक पीछे से स्कूटी पे आते हुए एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है दो एक गाय ब और बैल बाहर बैठे दिखाई दे रहे है कॉलोनी में पेड़ -पौधे दिखाई दे रहे है एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

म फूड्स दिखाई रहा है पीले फूल दिखाई रहे है रँगीले फूल यहाँ पे लगी हुए है काफी महिलाऐं दिखाई रही है कांच का गेट दिखाई रहे है अंदर भी महिला दिखाई रही है एक खिड़की लगी हुई है।